इस तस्वीर में एक बैंक दिख रही है।

बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक सड़क दिख रही है।

मस्जिद के ऊपर दो धोतुआ बंधे हुए हैं।

बाहर बैक खड़े हुए हैं।

कार के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है।

तस्वीर मा एक कार दिख रही है जिसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ है।

जिसमें एक खिड़की लगी हुई है।

एक पंडाल लगा हुआ है।

तस्वीर में दो ठेले लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड बना हुआ है।

बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और एक लाइट लगी हुई है।

इस तस्वीर मा एक कमरा दिख रहा है।

लाइट जल लही हुई है।

इस तस्वीर मा एक चाय की दुकान दिख रही है जिसमें मट्टी के कुज्जे रखे हुए--

बहुत सारे बिस्कुट रखे हुए हैं।

है दो लोग खड़े हुए हैं।

जिसमें एक घर बना हुआ है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ बैक खड़े हुए हैं।

पेट्रोल पंप दिख रहा है।

बहोत सारी लाइट जल रही हैं।

लोहे के सिच्चे लगे हुए हैं।

चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं।